एक यह एक बहुत-बड़ा नदी --

लड़कियों का ड्रेस भी है।

जो काफी बड़ा भी बड़ा भी है।

जल्दी ही हो जाएगा दिखने में भी बहुत --